और नीली - नीली भी लाइटें भी दिख रही हैं।

वो शायद डांस कर रहा है। उसने हाथ में भी जूते पहने है और पैर में भी पहने है।

और एक लाइट भी दिखाई दे रही है। एक बोर्ड भी लगा है जो उसमें कुछ लिखा है।

काले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है एक आदमी ने।

ऊपर अ अ टोपी लगाए हुए हैं एक आदमी ने सफेद रंग का टी-शर्ट पहन --